इस चित्र मे बडीसी बिल्डिग दिख रही है। और इसके तरफ पेड़ दिख रहा है। दुकाने दिख रहा है। दिख रही है।

चित्र मे एक तालाब दिख रहा है स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमे कई बच्चे नहा रहे है बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है छोटा स्विमिंग पूल दिख रहा है बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है लाईटे दिख रही है।

छत्री ही दिख रहे है।

इस चित्र मे एक आसमान दिख रहा है। सफ़ेद दिख रहा है। एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है। उसके किनारे एक बगीचा दिख रहा है। जहा पर बहुत सी हरी घास लगी हुई है। बहुत सा--

नाइ के दुकान दिख रही है। यहा पर एक आदमी मास्क लगाए लेटा है सामने एक फोटो खिच रहा है।

चित्र मे दो लड़के दिख रहे है।